बाल्टी में बहोत समाने रखी अलग से फूलों से डेकोरेट किए पाइप रखा बड़ा-बड़ा टंकी रखा हुआ कुर्सी रखा हुआ हैं।